ये चित्र में हमे यूनियन बैंक भवन दिख रहा है।

जिसमे आटा चक्की की मशीन रखी हुई है। एक बाल्टी रखी है। जिस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा है। पीछे भगवान की मूर्तियाँ लगी हैं। एक तस्वीर है उस पे हार डला है।

ये चित्र एक घर का है जो कि सफ़ेद रंग का है घर में बहुत सारे पिलर बने हुए है घर के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे है।

कपड़े सिंथेटिक रंगाई होती है दुकान के ऊपर पेड़ लगा है।

जिस पर लिखा है भगवान मयावीर स्वामी का जन्म कल्याण वर्ष सन् दो हज़ार नौ में हुआ था।

ये चित्र में हमें स्कूल दिख रहा है स्कूल का नाम जिब्रील पब्लिक स्कूल है।